एक घर के आगे एक पुल बना हुआ है जिसके अंदर कुछ बच्चे खेल रहें हैं पुल के पास ही दो लोग खड़े हैं जिनमें से एक व्यक्ति ने पीले रंग की लुंगी पहन रखी है वही --

वहीं एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने सफेद रंग की बनियान पहन रखी है और दूसरा व्यक्ति जो बैठा है उसने काले रंग की बनियान पहन रखी है।